सामने में मुझे एक टेबल नजर आ रहा है। रेड कलर का व्हाइट कलर का बहोत सारे चेयर नजर आ रहा है।

ये घर के ऊपर रड नजर आ रहा है ब्लू कलर का बोरी नजर आ रहा है।

एक बहुत सारे घर नजर आ रहा है लाइन के खंभे नजर आ रहा है पेड़ नजर आ रहा है दरवाजा नजर आ रहा है पर्दे नजर आ रहे हैं।

वे झूले में बहुत सारे लोग झूल रहे हैं उसमें रंग बिरंगी चेयर लटकी हुई है जिस पर लोग बैठे हुए हैं।

नीचे एक लंबी सी सड़क नजर आ रही है जिसपे एक आदमी नजर आ रहा है साइकिल चलाते हुए बोहोत सारे लोग नजर आ रहा हैं --

बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं जो कुछ मछली खरीद रहे हैं कुछ बेच रहे हैं।